पेट्रोल पंप हैं बैठा हुआ हैं दोठो स्टाफ है पीछे में बाईक लगा हुआ हैं साईड में खाली मैदान है मैदान में एकठो पेड़ है।

नदी है नदी में नाव है दोठो नाव पे बहोत सारे लोग हैं।

दुकान है दुकान में आगे से बहुत सारा खिलौना-विलौना दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक ठो -टयूब लाईट लगा हुआ है।

पीछे में बहुत सुन्दर सा बिल्डिंग है आगे पेड़ है रोड है एक ठो कार खड़ा है रेड कलर का कार है।

आगे सड़क है बहुत सारा इसमें ओटो लगा हुआ है।

ये बहुत बड़ा फील्ड है बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

ये कोई किराना दुकान हैंबहुत सारा सामान रखा हुआ हैं आगे में कोनफ्लेक्स रक्स रखा हुआ हैं पीछे में हॉर्लिक्स साईड में सेम्पू वेम्पू रखा हुआ हैं।

ऊपर केडबरी सेलिब्रेशन का डब्बा है।

नीचे दो शटर है दुकान होंगे अंदर अच्छी सजावट की गई है ।

यहाँ पे ये एक घर है बहुत ही अच्छा घर है नीचे सीढ़ी लगा है एक ओटो खड़ा है।

ये एक आगे बहुत बड़ा-सा बिल्डिंग है चर्च है बेसिकली बगल में एक टावर है बिजली का खंभा --

तीन स्कूप आइसक्रीम रखी हुए है।